एक आदमी खड़ा हुआ है।

साइड में नीले कलर का टेबल टॉप रखा है।

नीचे का रोड दिख रहा है।

बहोत बड़ी मस्जिद दिख रही है।

जिसमें बलून लगे हुए हैं।

कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक ऑटो और कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं।

बहुत से इंसान और गाड़ियां दिख रही हैं।

दूर की तरफ एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारी गाड़ियां और कार --

सामने की तरफ कुछ आदमीदिख रहे हैं।

अंदर की तरफ एक मूर्ति है।

साइड में एक डस्टबिन --

ये एक एम_पी साड़ी सेंटर है।

ऊपर की तरफ पंखा लगा हुआ है।

सामने की तरफ बड़े-बड़े हेयर--

साइड में एक वेनं खड़ी हुई है।

पीछे की तरफ कुछ पुराने मकान दिख रहे हैं।

ये पिऊपल्स मॉल है।

बहुत सारे लोग बाइक लेकर लाइन में खड़े हैं।

दूर पर एक लाल कुर्सी रखी हुई है।

ये एक होटल लग रहा है।

सामने की तरफ कुछ लोग दिख रहे हैं।